यहां पर एक ट्रक है और कुछ पिलर लगे हुए है।

वाहन चल रहे है रोड के दोनों तरफ बाउंड्री --

यहा पर लोगो की भी बहुतसी भीड है और यहा पर आजू बाजू बहुत सी दुकाने भी है।

यहां पर बहुत से साधु पंडित नारंगी पोशाक में बैठे हुए है।

यह एक पॅलेस है इस पॅलेस में बहुत सी शादियां करवाई जाती है।

यह एक रोड है इस रोड पर चारों तरफ से वाहनों का आना-जाना लगा हुआ है।